वहाँ पर रु-रुका ट्रेन है यहाँ पर रुका ट्रेन है और यहाँ पर सवारी बैठ रहे है बहुत अच्छे है सुंदर हैं।

यहाँ पर सवारी जा रहे है बहुत अच्छे है सुंदर है और यहाँ पर यहाँ पर पेड़-पौधे है कई तरह के पेड़-पौधे है बहुत अच्छे है सुंदर है मंदिर है बहुत अच्छे है सुंदर है।

यहाँ पर बस है यहाँ पर भारत देश का बस है यहाँ पर भारत देश का बस है बहुत अच्छा है सुंदर है।

सुंदर हैं सुंदर हैं और यहाँ पर सुंदर हैं।